बहुत बड़ी जो मस्जिद के अंदर का भाग दिख रहा है वहां पे बहुत सारा दो फैन दिख रहे हैं लाइट चालू दिख रही है और बाहर का कुछ जाने आने रास्ता दिख रहा है नीचे कारपेट दिख रहा है उस ---

कलर की एक दिवार दिख रही है वहां से कुत्ता जाता हुआ नजर आ रहा है वहां पे सामने रास्ता दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है।

की साइड में कुछ एक जो लकड़ी के बाम्बू है उससे कुछ बांध कर रखा हुआ दिख रहा है दूर कुछ घर दिख रहे है पेड़-पौधे दिख रहे है आसमान दिख रहा है।

मस्जिद का इमारत दिख रहा है उसको सफ़ेद और हरा कलर दिया हुआ है आसमान दिख रहा है वहां पे दो मजली दिख रहा है नीचे कु हम्म लोगो बहोत सारे लोग दिख रहे है।

ऊपर की तरफ़ भी कुछ सारे लोग दिख रहे वहां पे गैलरी बनी हुई है उसको भी सफ़ेद कलर के ग्रिल पे लगाऎ हुए है।